स्टेज में वहाँ पर ग्रीन कलर की कार्पेट बैठइ-बिछाई गयी है और साथ ही साथ यहाँ पे वॉल पे पर्दा दिया गया है ब्लू और मेहरून कलर के स्टेज के ऊपर काफी सारे पोस्टर भी लगाए गए हैं और स्टेज पे काफी सारे लाइट से भी डेकोरेट की गयी है।

एक शेरवानी की शोरूम हैं जहाँ पर तीन स्टेचू पर शेरवानी रखी गई है वॉल पर पिंक कलर की गयी है और नीचे कार्पेट बिछाया गया है।

इसके अलावा यहाँ पे कुछ-कुछ शोर हैं जहाँ पे बहुत सारे कपड़े भी दिखाई दे रही है इसके अलावा कुछ स्टोर्स है जहाँ पे बहुत लाइट से डेकोरेट भी की गयी है साथ ही साथ कुछ गाड़ीया है जहाँ पर बोटेल की पानी भी बिक रही हैं।

यहाँ पर सामने फ्लैग उड़ाई गयी है साथ ही साथ यहाँ पर फादर खड़े हुए साथ में बहुत सारे लोग और लेडीज भी खड़ी हुई हैं पीछे एक बड़ा सा चर्च हैं चर्च में काफी बड़े बड़े खिड़किया हैं।

और साथ में उन्होंने स्कर्फ भी लिया हैं उसके गले में एक मेडल भी हैं उनके पीछे एक मिरर भी हैं मिरर में काफी सारे बच्चे और बल-बड़ों के फोटोज भी आ रहें हैं और कुछ बेंच की भी दिखाई दे--

चेयर में एक बच्चा बैठा हुआ है पीछे एक आदमी खड़ा है कन्घी और केची से उसकी चूल कट कर रहे हैं साथ ही साथ--